और एक बिजली का तार भी दिखाई दे रहा है।

मजदूरों के हाथों में अपने औजार हैं।

कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

यह तस्वीर बहोत बड़ी शॉप की हैं ये शॉप खिलौनों की है।

और इसके अलावा फूलों के गुलदस्तें--

इसकी कई ऊंची बिल्डिंग है।

और यह बहुत सुंदर सा नया मका--

यहां पर बहोत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है यहां कुछ हरे रंग की बड़ी बड़ी टंकियां रखी--

रखे गए हैं। यहां पर बहुत सारे गमले भी रखे हैं।

जिनमें हरे पौधे लगे हुए--

ये तस्वीर एक सैलून की है यहां एक लड़की बैठकर सेल्फी ले रही है।

लगाई गई है यहां लेंटर डाला जा रहा है।

लगे हुए हैं ये बहोत बड़ा ग्राउंड हैं।

लग रही है यहां कई मोटरबाइक भी खड़ी हुई है और बहोत सा--

दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई हैं।